ये दिवाल पे बहोत यूनिक टाइप का डिजाइन किया गया है इसमें दो फ्रेम रखे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा सा लेक है जिसके सामने ही एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है।

उसी के जस्ट सामने वो व्हाइट कलर का पूरा पेंट किया है सामने बहुत सारे ग्लास लगे हुए हैं।

दो ए_सी लगा हुए हैं तीन पंखे लगे हुए हैं थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट है पैनासोनिक और सैमसंग के।

यहां जो सामने एक सर्जरी केयर है ये इस तीन माले का बिल्डिंग है।

एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां बाहर बहोत सारे फोटो रखे जैसे पिज्जा बर्गर उसी के बाहरी कुर्सी रखा हुआ--

कोने मे एक और छोटा सा रेस्टोरेंट या होटल जैसा बनाके रखा है यहां पर एक स्कूटी है जो जा रही है ऊपर बहोत सारे वायर है जो लटके हुए है।

यहा पे नीचे बहोत सारी यूनिक टाइप के ग्रासेस पड़े हैं एक कोन लास्ट में है एलो टाइप मे एक माउंटेन है अच्छा सा --

उसी की बाजू में एक सफेद कलर की गाड़ी है और बाजू में स्कूटी है ऊपर एक छोटा सा पोस्टर बनाया है ट्यूशन का --

कुर्सी के ऊपर बहोत सारे अ स्पीकर्स रखे है और ये रूम सफेद कलर से कलर किया हुआ है।

उसी के सामने को दो बाइक है जिसमें स्कूटी और एक बाइक है।

ये एक बिल्डिंग है जिसके नीचे कोटक बैंक है उसी के ऊपर एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है।

यहां पर नीचे एक वाइट कलर कपड़ा है रस्सी टाइप जो गिरा है यहां पर होटल सरोवर व ब्राउन और वाइट कलर में पूरा बनाया गया है डेकोरेट किया है।